इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यह एक डॉक्टर की दुकान है।

एक स्विच लगा है आगे एक टेबल रखा है टेबल पर कुछ सामान रखा हुआ है।

और एक शीशा लगा हुआ है। और यह एक हॉल है जिसमें तीन पंखे लगे हैं।

जिसमें ब्लू कलर की सीट्स लगी हुई हैं जो खाली है।

और ब्लैक कलर का बलियान और लावर पहने हुए है।

जिसमे के बीच में एक बच्चा खड़ा है। इनका कलर दो येलो कलर के एक ब्लू कलर के और एक ग्रे कलर के जिनमे येलो येलो कलर के साइड बनी है।

इस पिक्चर में यह दिखाया गया है कि यह एक के बराबर में एक घर है।

बहुत बहुत पीछे बहुत सारे गाड़ियां खड़ी हुई है बहुत क्लीन स्थान है।

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यह एक फोटो फ्रेम की दुकान हो सकती है।

यहां पर टीन का टीन से बना हुआ मकान है चार कुर्सियां रखी हुई हैं।

इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इसमें फूलों से बनाई गई माला है।

और पानी बहुत सुंदर लग रहा है पत्थर पत्थर है पत्थरों से गुजर कर पानी आ रहा है।

जो जीन्स एक लड़का जींस की पैंट और ब्लू कलर के स्लीपर पहने हुए हैं।

पेड़ों की हरियाली पानी में झलक रही है कितना सुंदर पानी लग रहा है अति सुं--